यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर एक मोर बैठा है।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

जिसका नाम मारुति सुजुकी इस पर न-नंबर प्लेट नहीं है तथा बगल से एक व्यक्ति--

यह एक ग्राउड है जिसके अंदर बहुत सरे पेड़ पोधे उगे हुए हैं।

तथा एक बहुत बड़ी चटान सामने की और रखी हुई है इससे थोड़ी दूर पर एक ऊपर एक मदिर बना हुआ है जिसके नीचे एक ओरत खड़ी है।